इसके चारो ओर बाउंड्री भी हो रही है।

लड़के ने हाथ पहाड़ पर र--

दुकान में दुकान का मालिक भी है।

इसमें दो पंखे भी दिखाई दे रहे।

बरामदे में एक व्हाइट कलर टैंकर भी--

और बहुत सारे कुंछो मे गुब्बारे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।